इस दृश्य में बहुत सारी बकरियों का झुंड दिखाई दे रहा है।

दो दुकानें भी नजर आ रही है जिनमें पेवर्स और इनक्रेडिबल ट्रेड लिखा हुआ हैं।

यहां पर दीवाल में बहोत से अलग अलग तस्वीरें भी टंगी हुई हैं।

स्विमिंग पुल में उतरने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई है।

यहां पर बहुत से पुतलों को कपड़े पहना कर रखा गया है।

यह एक सैलून का दृश्य है जहां पर एक व्यक्ति अपना दाढ़ी बनवा रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति आग लगाकर कुछ जला रहा है।

बैंक के नीचे एक ए_टी_एम भी नजर आ रहा है।

फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है।

यहां पर एक कारपेट बिछाया हुआ है जिसका रंग लाल है।

दो तीन व्यक्ति गाड़ियों को रिपेयर कर रहे हैं।

यहां पर इस शोरूम में बहुत सारे बैलून से इसे सजाया गया है।